एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तथा पुल के ऊपर बहोत बड़े बड़े लोहे दिखाई दे रहे हैं।

बीच में बहोत सारे लकड़ी और लोहे से बने टेबुल एंड कुर्सी रखे हुए हैं।

में यहां एक मॉल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक कांच से बना घड़ी भी लटका हुआ है।

इसके बीच में दो बड़े गिलास और बोतल दिखाई दे रहे हैं।

और कांच के अंदर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पर एक लोहे से बना बहुत बड़ा बक्सा भी रखा हुआ है।

जहां हमें दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

टाइल्स से बने और लकड़ी से बने बहुत बड़े बड़े टेबल दिखाई दे रहे हैं जो अल्मुनियम और स्टील से भी बने हैं।

और उसके आगे में भी बहुत सारे बस है।

यहां एक नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

हमें यहां एक घर का दृश्य दिखाई दे रहा है जो अभी बन रहा है।

हमे यहां एक घर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तय यहां पर बहोत पानी है।

और इनका यहां पर बहुत सारे लोहे दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो आगे की ओर जा रहा है।

तथा सामने की ओर एक लोहे और फाइबर से बने बहुत सारे डेस्क दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारे पानी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दीवाल में ग्रीन और व्हाइट कलर का पेंट भी किया हुआ है।

इन अगल बगल लोहै और लकड़ी से बने टेबल भी रखे हैं।

ऊपर बहुत सारी लकड़ी और बास लगे हैं।

में यहां एक जीम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इसमें सामने की ओर लोहे और शीशे से बने बहोत बड़ा डेस्क दिखाई दे रहा है।

और दूसरी ओर एक कंप्यूटर भी रखा है जिसके बगल में एक लाइट भी लगा है।

लोहे और प्लास्टिक फाइबर बहोत बड़े बड़े झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां एक बस स्टैंड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इसके अगल बगल बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहां पर एक बहुत बड़ा रॉड दिखाई दे रहा है जो लोहे का बना है।